यह श्री कृशन की मूर्ति है और देखने में भी बोहत अच्छी लग रही है | इसके कारीगर ने इसे बहुत अच्छे से बनाया है ।

और इसके बगल पे गेट नंबर चार लिखा हुआ है।

सजावट अच्छी है। सामने एक घड़ी दिखाई दे रही है।

य फोटू ऐंच रहा है।

पड़ा हुआ है जिसका पैंट नीला है।

एस सिंगिंग का हाउस लग रहा है।

यह पहाड़ की बीच की जगह है| यह आदमी ने नीला पेंट नीली जरकट पहन रखी है।